और एक स्कूटी आ रही है जो की वाइट हैं और रेड और पीले में कॉलेज बना है पूरा।

नीचे टाइल्स है जो कि दो इंसान है जो की एक नीला ही शर्ट पहना है एक सफेद टोपी पहना है और--

आंटी स्वेटर पहनी है पीला कलर की साड़ी पहनी है बहुत सारे पेड़ है जो कि ग्रीन है एक टेबल है जो ब्लैक और कच्चे से है लाइट है जो की सफेद है।